आमने की ओर एक दरवाजा है जो कि बंद है।

सफेद रंग की मशीन है और खिड़की के पास एक टेबल है जिसमें हरे रंग की कपड़े बिछी हुई है ।

यह एक मॉल की तस्वीर है जहां विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्तुएं मिलती है।

नीला आसमान व थोड़ी सी सूरज की किरणें आती हुई नजर आ रही है।

टो के ठीक सामने एक नीले रंग की टोटो खड़ी हैं।

एक और लाल रंग की दो आयतें रखी है।

एक और व्यक्ति नीले रंग की निकर पहन के खड़ा है जिसके बनियान का रंग सफेद है।

टेबल के ऊपर कई अन्य प्रकार की खाने की वस्तुएं रखी है।

इस चित्र के सामने काले रंग के गमले में एक पौधा लगा हुआ है।

लड़कियों के ठीक पीछे तीन लड़के सफेद रंग के कपड़े पहन कर डांस कर रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ी सी सड़क व सड़क ठीक पीछे एक बड़ी सी तीन तल्ले की पीले रंग की इमारत है।

इमारत के ऊपर के दो तल्ले की दुकानें बंद है।

कारपेट के सामने एक गेट है जिस पर नीले और सफेद रंग के बैलून हैं।

थोड़ी ही दूर में ढेर सारे टीनी के डब्बे हैं जमीन पर टाइल्स भी लगी है।

एक व्यक्ति सामने की ओर दिख रहा है सफेद रंग की कमीज पहन के वह दूसरी दूसरी ओर एक व्यक्ति काले रंग की शर्ट व जींस पहन के दिख रहा है।

किनारे एक बिजली की खंबी लगी हुई हैं जिसमें तारे लटक रही है।

ढेर सारे टेबल है जिसके ऊपर किताबें हैं।

एक लाइट उस दीवार पर है जहां तस्वीरें लगी है।

वह लड़की ने हरे और लाल रंग की पोशाक पहनी है।